एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

जिसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे फल रखे हुए है।

अहूर फल के बराबर व आगे बेल भी लटकी हुई है।

और कूलर भी दिखाई दे रहे है।

मैदान में छोटा छोटा घास भी है।

इस तस्वीर में इस व्यक्ति का मुंह दिखाई नहीं दे रहा है।

बराबर साइड में पेड़ भी ऊगे हैं।

अउर कुछ कपड़े बड़े बच्चों के दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बराबर साइड में पेड़ उगे हुए हैं।

एक छोटा हाथी भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

और कुछ व्यक्ति गेड़ी पर बैठे हुए हैं।

एक बैग भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।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

और दो थमले भी है जो रेड कलर के हैं।

चेयर भी रखे हुई है।